यहाँ पे खड़ा होने वाला समुंदर बना दिख बना बनाया गया है और बहुत दूर तक समंदर दिखाई पड़ रहा है और आस पास हरियाली भी बहुत जयादा है और इधर पे पेड़ बहुत ज्यादा खड़े हुए हैं और हरियाली बहुत --

और ये यहाँ पे घर भी मालूम पड़ रहे हैं और यहाँ पे पेड़ भी बहोत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं और यहाँ से खड़े होकर समुन्द्र को देखा जाता है।

यहाँ पे तीन झोपड़ियाॅं बनी हुई हैं ऊपर से और इनके कलर भी बोहोत ज्यादा सुंदर लग रहे है और यहाँ पे एक पेंटर भी यहाॅं --

और बाईक पे एक लड़का लड़की बच्चा बैठा हुआ है। एक पे लड़का लड़की छोटी सी एक लो ओरत भी बैठी हुई है। एक औरत जा रही है। सब्जी खरीद रही है और उसके ऊपर --